और यहां पे हम सैलून के अंदर देख सकते हैं बहोत सारे अह वाटर स्प्रे दिखाई दे रहे हैं यहां पे पौंड्स् का ए --

यहां पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये--

अ डेंटल क्लिनिक का बोर्ड है यहां पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर नलिनी पटेल डेंटल सर्जन और यहां पर उनकी टाइमिंग्स भी दिखाई दे रहे है।